इधर बल्ब दो बल्ब लाइट दिख रहे हैं।

और पहाड़ में लगता है बहुत पेड़ है।

यहाँ पर दो बड़े बड़े केक्स हैं।

और पेड़ भी हैं उधर।

और इधर दो तीन आदमी है।